और यहां पे जो है पानी भी है और पीछे उसके पेड़ भी दिख रहा होगा आपको।

ये देख रहे होंगे आप अ तीन चार प्रकार की है किसल पट्टी।

और यहाँ ये पैक भी है फिसलपट्टी लेट के आओ और यहाँ पानी भी देख रहे होंगे कितने भरे हुए है अ बच्चे लोग भी नहा रहे है।